बनियान और काली कलर की पजामा पहना हुआ है और जिम की बहोत सारी मशीनें है और नीचे --

फूल है और पीछे बहोत बड़ा पहाड़ है और और तालाब है पानी का --

इस फोटो में मुझे एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें कांच की खिड़कियां लगी हुई है कांच की खिड़कियों का कलर नीला है और काला है।

और पिंक कलर के बैलून हैं ग्रीन कलर के बैलून हैं ऑरेंज कलर के बैलून हैं येलो कलर के बैलून --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

बहोत सारे लोग है और पेड़ पौधे है बहोत सारे और एक बाइक खड़ी है यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बीच में एक सर्कल बना हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक बेकरी शॉप दिख रही है जिसमें बहुत सारे डब्बे रखे हुए बहुत सारे कुकीज के --